अपना मोर अपना सारा पंख फैलाए हुए है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये।

वो सज-धज के तैयार है किसी पार्टी और किसी भी फंक्शन के लिए बाहर से --